एक दादा जी अ ऑटो लेके खड़े हुए हैं।

यह बहुत ही छोटा है ज्यादा बड़ा नहीं है।

पास में एक डलिया रखी है जिसमें कि फूल हैं।

आस पास बहोत सारे अ फि फिजिकली ट्रेनिंग के लिए चीजे रखी हुई हैं।

पेड़ पौधे है जो की हरे भरे घास से मैदान बना हुआ है।

डी_एस_पी सोडा कॉफी शॉप भी है।

जो कि व्हाइट कलर का एरोप्लेन है तथा उसका एक पंखुड़ी रेड कलर का है।

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि आई_टी कॉलेज दिखाया गया है।

ग्रीन रेलिंग लगी हुई है सड़क के बीच में।

सामने और कुछ दूरी पर मकान भी बने हुए हैं जो की बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है देखने में।

इस पिक्चर में दिखाया गया दृश्य बहोत ही अच्छा लग रहा है।

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि रेलवे स्टेशन का लग रहा है।

अनगिनत पिलर्स लगे हुए हैं लाइट्स लगी हुई हैं।

इसमें अ कई महिलाएं बैठी हुई है।

इस सजावटी दृश्य से इसका दृश्य येलो है और ग्रे कलर का है।

पानी का रंग नीला दिख रहा है और नाव में पुरुष के अथवा और भी कई चीजें रखी हुई--

बहुत सारे लोग यहां पे घूमने तथा शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं।

एक ही पास तीन बोर्ड्स रखे हुए हैं तथा इसके बगल में कोई और भी स्थान है।

और बिल्डिंग के बगल में एक और बिल्डिंग है।

क्योंकि अह रेड कलर के दरवाजे से जालीदार दरवाजे से घिरे हैं।

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य रेलवे ई स्टेशन है।

ट्रेन खड़ी है जिसका र जिसका कलर व्हाइट तथा रेड है।

सीमेंट ईटा तथा बाकी और भी सामान आसपास बिखरा हुआ है।

सामने से एक ताऊजी जा रहे हैं उन्होंने एक छाता हाथ में पकड़ रखा है।

लगभग सब एक अह टाइप की हैं और कलर भी सब का सेम है लगभग।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

पार्किंग के लिए रास्ता बना हुआ है और बिल्डिंग के सामने कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में महिला अपनी पिक्चर ले रही हैं फोटो ले रही हैं जिनके फोन का कवर कुछ प्रिंटेड टाइप का है।

लाल सफेद पीले गुलाबी झालर से सजाया गया है।

श्री गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है।

एक लोग हैं जिन्होंने ब्लैक टी-शर्ट पहन रखी है तथा उनके बगल में एक पंखा रखा हुआ है।

उसका जो कलर है वो येलो है गोल्डन ।